और इ-इ यहाँ पर जाने के लिए मेरा मन भी करता है और बहुत खूबसूरत और बहुत मजा आता होगा।

और यहाँ पर पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है साथ में लाइट भी है और इसका डिज़ाइन भी बहोत खूबसूरत है मुझे लग मजा आ गया यहाँ बिल्डिंग और इसमें बहोत सारे लोग घूमने के लिए आते होंगे ।